पीले कलर के तीन पिलर दिख रहे हैं। एक ब्रेंच दिख रही है ब्लैक कलर की। अ --

दो आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं सफेद कलर की कार दिख रही है। स्कूटी खड़ी हुई दिख रही है ब्लैक कलर --

एक मिरर अ एक दरवाजा दिख रहा है ब्लू कलर का। एक हर एक हरे कलर का कारपेट दिख रहा है।

हरे कलर के पेड़ दिख रहे हैं। हरे कलर की घास दिख रही है। एक प पेड़ का तना दिख रहा है।

कांच का एक दरवाजा दिख रहा हे दरवाजे पे मोस्ट वेलकम लिखा हुआ दिख रहा हे। एक बैनर लगा हुआ दिख रहा हे।

पारसी दिख रही है एक ब्रेंच रखी हुई दिख रही है ब्लैक कलर की।

एक पोटली पड़ी हुई दिख रही है। एक सफेद कलर की थैली दिख रही है।

कुछ लड़के यूनिफॉर्म में खड़े हुए दिख रहे हैं। हरे कलर का पेड़ दिख रहा है।

एग लेस बैकरी दिख रही है। सफेद लाइटिंग्स लगी हुई दिख रही हैं।

कुछ कपड़े सूखे हुए दिख रहे हैं। छत दिख रही है। कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं।

दो बैनर सफेद कलर का दिख रहा है। ऑरेंज कलर का एक गेट दिख रहा है। लाइटस सफेद कलर की दिख रही है।

तिरुपति पहाड़ दिख रहा है। अल्ट्राटेक सिमेन्ट का पोस्टर दिख रहा है ये और --

ब्लैक कलर का एक डेस्क रखा हुआ दिख रहा है।

कुर्सियां रखी हुई दिख रही हैं। एक कारपेट लाल कलर का बिछा हुआ दिख रहा है।

हरे कलर की कुछ पौधे दिख रहे हैं एक लोहे का पाइप दिख रहा है।

ए एक अ आ हेलमेट ब्लैक कलर का दिख रहा है। दो बाइक खड़ी हुई दिख रही हैं ब्लैक कलर की।

दीवार दिख रही हे चॉकलेट कलर की इसपे कुछ होल दिख रहे हे बने हुए। कृष्ण भगवान की --

दिली की वायर दिख रही है रोड दिख रहा है।

आ मोबाइल की शॉपस दिख रही है।

एक ट्रैक्टर दिख रहा है। हरे कलर की पत्तियां दिख रही है।

लकड़ी के बेट रखे हुए दिख रहे हैं।

प पर्चे लगे हुए दीवार पर दिख रे हैं।